यहां पे सभी लोग खड़े हैं यहां पे गर्ल्स भी है बॉयज भी है और --

गाड़ीयां ठीक होती है यहां पर अलग अलग प्रकार की गाड़ी आती है और गाड़ीयों की सर्विस होती है।

बहोत बड़ी है इसमे बावन सीटे हैं।